पंखा सब लगा हुआ है तीन ठो चार ठो देख सकते है यह यहाँ हम लोग क्या करते है

देख सकते है नजारा कितना अच्छा है|

आदमी भी है बहुत सारा।

देख सकते है यह मन्दिर है यहाँ स्पीकर लगा हुआ है अं महजिद है महजिद महजिद महजिद है कितना अच्छा लग रहा है पिछे मनुस है कितना अच्छा लग रहा है नजा--

मंदिर बहोत अच्छा है बास लगा हुआ है तिरा है लाइट लगा हुआ है कितना अच्छा लग रहा है देखने मे।

ढेर सारा घर है लाइट लगा हुआ है कितना अच्छा लग रहा है देखने मे नजारा देख सकते आप लोग।